ये फोटो किसी शादी समारोह का या रिसेप्शन का है जिसमे स्टेज है स्टेज के पीछे पे एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ है।

माथे में कुछ पेहने हुए हैं जिससे कि उनका बाल लग रहा है नही गिरे। एक लड़का है इधर ही देख रहा है। स --

सारे अ कपड़े हैं | एक कुर्सी रखा हुआ है | यहाँ कोई आदमी नहीं है ।